और यहां पे लाइट भी लगी हुई है छत के यहाँ पर रेलिंग पर बालकनी दिखाई दे रही है जिसके ऊपर से तार जाते हुए दिखाई दे रहे है जो घर का कलर है मल्टीप्ल पेंटिंग यहां पे की गयी है।

स्टेज दिखाई दे रहा है स्टेज में एक सिटींग के लिए सोफा रखा गया है ऊपर फ्लॉवर से डेकोरेशन किया गया है कर्टेन का डेकोरेशन किया गया है जहाँ पर कर्टेंस लगाये गए है वाइट कलर का है।

बहुत सारे कप्बोर्ड बने हुए है बहुत सारे कप्बोर्ड में बहुत सारा समान भरा है कुछ में किताबे भरी हुई है कुछ में खाने के आइटम दिखाई दे रहे है कुछ में बुक जैसी दिखाई दे रही है।

गार्डन दिख रहा है गार्डन में चारो तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है यहा पर अलग अलग कलर अलग अलग घास उगाई गयी है कुछ घास ओरंगो कलर के है कुछ घास ग्रीन कलर के है।